बिस्तर के ऊपर सफेद कलर की टॉवल और रेड कलर की कपड़ा भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में दुकान का नजारा दिख रहा है यहां पर मुझे बहुत सारे खाने की सामान जैसे कि इमली अमला दिखाई दे रहा है।

टेबल में मुझे रेड कलर की लैंप और प्लास्टिक भी दिखाई दे रही है।

इसके सामने एक पेड़ है और पीछे में मुझे बहोत सारे घर दिखाई दे रही है।

और यहां मुझे येलो कलर की टेबल भी दिखाई दे रही है।

मुझे कप्स के ऊपर बहुत सारे बक्से में सामान रखे हुए दिखाई दे रही हैं।